फूले दिख रहे हैं और यहां पे बहुत सारी एयर कॉरपट का दिख रही है सीमेंट सी रेत सी दिख रही है और इसमें बहुत सारा कलर सा दिख रहा है और यहां पे नीचे बहुत थंभे हैं और नीचे क्या नदी बह रही है क्या।

यहां पे चार पांच ये कुत्ते दिख रहे हैं या हिरण हैं यह तो मेरे को पता नहीं और यहां हां यहां पे हिरण ही हैं ये तो।

और यहां पे बहुत अच्छा शुद्ध वाता--

दो आज मनुष्य बैठे हुए हैं यहां पे एक साउंड भी दिख रहा है मेरे को और वहां पे गया पता नहीं खेल चलेगा या डांस करेंगे और --

यहां पे नर्सरी है एक यहां पे उनको उगाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं मन मनुष्य और एक --

पाइप लाइन भी जा रही है उधर और वहां पे क्या है गैस की टंकी सी दिख रही है और बहुत सारे पेड़ पोधै हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं।

बड़ी मशीन से काट सकते हैं हम--

और यहां पे बहुत अच्छे-अच्छे कारनामे कर भी कर रहे हैं और यह दो प्रकार की होती है काफी एक कोल्ड कॉफी भी होती है गरम कॉफी भी होती है और चाय भी --

बहुत सारे हैं इधर और येग स्कूल के कलर भी किया गया है और पीछे एक खिड़की भी है और मास्टर और मैडम भी है और बच्चे भी बहुत हैं।

और यह खुली जगह है और यह ए इसमें अ मनुष्य जा रहा है बिल्डिंग मे --

कोई व्यापारी भी आ रहे हैं और ए_सी भी लगी हुई है और दो तीन फोटो भी है और एक आदमी हाथ निकाला हुआ है।

खंभे भी है और नीचे कुछ समान भी पड़ा हुआ है और दरवाजा बहुत अच्छा है और ये लोहे का दरवाजा है।

और साइड में यहां पे जोकि एक घर है उसकी छाव मे हमें दिखाई दे री है बहोत ही शानदार दृश्य है यहां पर।

हेलो दोस्तों तो यहां पे आप देख सकते है की तस्वीर में मजदूर लोग है जो कि काम कर रहे है।